लोग बैठे हुए हैं एक साइड गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं।

इस चित्र में दुकान का सामान रखा हुआ है अन्दर की ओर टेबल कुर्सी लगी हुई है और दुकानों में सामान लगा हुआ है काँच का दरवाजा बन्द है।

इस चित्र में कई कुर्सी मेज लगे हुए है ऊपर की ओर फुग्गे फुआ लगे हुए है।

और बिजली के तार डले हुए हैं और आसमान में मौसम अच्छा है।

इस चित्र में गाड़ियां खड़ी हुई है आगे की तरफ बड़े पेड़ है और आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है बड़े-बड़े वृक्ष घनघोर पेड़ हैं।

चित्र आर.के. इंटरप्राइजेज का है आगे की ओर दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं सीसे के दरवाजे हैं ऊपर की ओर नाम लिखा हुआ है।

इस चित्र में ए.एस. मोटर की दुकान है एक दुकान बंद है।

ये चित्र रेलवे स्टेशन का है ऊपर की ओर जीने जाने का रास्ता है नीचे शेड डले हुए मकान है पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए है और पानी भरा हुआ है।